इस चित्र में मुझे दो बड़े दो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आमने सामने और इस पहाड़ पर एक लड़का खड़ा हुआ है दूसरे पत्थर पे ए --

इस चित्र में मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है और इस गार्डन में अलग-अलग प्रकार के फूल लगे हुए हैं यहां की सड़क पक्की और इसके आमने सामने बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस चित्र में मुझे एक एस_बी_आई बैंक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है इस ए_टी_एम के बाहर--

कुछ गाड़ियां और कुछ लोग खड़े हुए हैं छोटा सा बच्चा भी खड़ा हुआ है और एक वहां पर कार है यहां का रास्ता कच्चा है।

इस चित्र में मुझे बड़ा तलाब दिखाई दे रहा है बड़ा तलाब के सामने एक बड़े बंदू बहुत सारे बड़े बड़े पेड़े खड़े हुए हैं।

घर बने हुए हैं और सामने पेड़े भी लगे हैं।

इस चित्र में मुझे एक बाइक दिखाई दे रही है खड़ी हुई।

इस क्षेत्र में मुझे एच_डी_एफ_सी बैंक नजर आ रही है बैंक के बाहर--

हालांकि आगे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है ब्रिज के नीचे।

कुछ लोग जा रहे हैं और यहां पर बहुत ज्यादा भर हो रही है।

कूलर दिखाई दे रहा है कूलर के ऊपर पेटीम लगा हुआ है।

इस चित्र में मुझे कपड़े की शॉप नजर आ रही है।

लोग बैठकर एंजॉय कर रहे हैं दला के सामने एक पहाड़ इसमें--

इस चित्र में मुझे पी_बी_जी_एम कॉलेज नज़र आ रही है पी_बी_जी_एम कॉलेज वाइट कलर से पुती हुई है और इसका ग्राउंड देखो नज़र आ रहा है ग्राउंड पर --

इस चित्र में मुझे पोस्ट गैलरी नजर आ रही है पोस्ट गैलरी के सामने कुछ पैर लगे हुए हैं और यहां पर घेरन खड़ी हुई है और सामने ही एक घर बना है।

जो बिल्डिंग है वो वाइट कलर से पती हुई है उस बिल्डिंग के नीचे कुछ बाइके खड़ी हुई है वहां पे--